इसके ऊपर बहुत से गुंबद टाइप के लगे हुए हैं।

तीन फ्लोर है और पीछे एक बहोत सुंदर पहाड़ है और ये बड़ी सी इमारत भी बड़ी प्यारी लग रही है।

और राइट साइड में एक गाड़ी भी खड़ी है।

लाल कलर का टेबल है जहां एक चेयर भी रखा हुआ है।

और एक बहुत बड़ा सा ट्रक जिस पे एक बाबा विराजमान है।

और बी_एस_एफ के आर्मी उसे सुरक्षा दे रहे हैं।

यह कोई शोरूम लग रहा है जहां एक हुंडई की बहुत सुंदर गाड़ी ग्रे कलर में खड़ी है।

यह फोटो में मुझे बहुत बड़ा वृक्ष पीछे दिख रहा है।

यहां दो तीन औरतें भी दिख रही हैं और चार लड़के दिख रहे हैं।

कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं।

दो लोगों ने नीले रंग की शर्ट ढाली है।

अंदर कोई भगवान की मूर्ति है।

दो घर दिख रहे हैं जिसके पीछे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।

लोग तो नहीं दिख रहे तीन चार पेड़ भी दिख रहा है।

तीनों घर ऊपर की ओर बने हुए हैं।

यह कोई मुझे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट लग रहा है जहां चेयर है बहुत सारे।

एक औरत की फोटो भी लगी हुई है।

लड़का का चेहरा नहीं दिख रहा है लड़के ने सफेद करके कलर की शर्ट पहनी है और एक जींस भी पहना है।